मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में थीम्स पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगेः मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में थीम्स पर्सोनास एडविज्ञापन ब्लॉकिंग
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स यूजर की रूचि या प्रेफरेंसेस के अनुकूल कस्टमाइजेशन प्रदान करता है
थीम्स इन में से एक कस्टमाइजेशन है
एक थीम के बदलने से फ़ायरफ़ॉक्स बैकग्राउंड रंग बटन का लुक और लेआउट बदल सकता है
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउजर खोलते हैं
हम पहले सीखते हैं कि मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स में थीम कैसे बदलें
पहले लोड इमेजेस automaticallyऑप्शन सक्षम करें ताकि हम ब्राउज़र में प्रदर्शित इमेज देख सकें
मेनू बार से एडिट और फिर प्रेफरेंस पर क्लिक करें
प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स में कंटेंट टैब चुनें
लोड इमेजेस ऑटोमैटिकली बॉक्स चेक करें
क्लोज पर क्लिक करें
अब यूआरएल बार पर क्लिक करें और टाइप करें addonsmozillaorgfirefoxथीम्स
ENTER दबाएँ
यह हमें मोजिल्ला फायरफॉक्स add ओन्स के लिए टीएमईएसई पेज पर ले जाता है
हम यहाँ बड़ी संख्या में थीम्स को थंबनेल्स के रूप में देखते हैं
थंबनेल आपको दिखाता है कि थीम्स कैसे प्रदर्शित होंगी
यहाँ आप थीम को प्रिव्यू कर सकते हैं
उपलब्ध थीम्स की श्रेणियां देखें और अन्य यूजर्स द्वारा दिये गये रेटिंग देखें जिन्होंने थीम का इस्तेमाल किया है
अपने माउस सूचक को कुछ थीम्स पर धुमाएँ
अब शाइन ब्राइट स्किन थीम पर क्लिक करें
इस पेज पर उपलब्ध थीम्स में से यह एक है
शाइन ब्राइट स्किन थीम पेज प्रदर्शित होता है
कंटीन्यू टो डाउनलोड बटन पर क्लिक करें
यह आपको थीम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनेवाले पेज पर ले जाता है
थीम को संस्थापित करने के लिए एड टो फायरफॉक्स बटन पर क्लिक करें
add ओन डाउनलोडिंग प्रगति बार प्रदर्शित होता है
आगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पुष्टिकरण संदेश दिखाई देता है
इंस्टॉल नोव पर क्लिक करें
एक संदेश प्रदर्शित होता है कि थीम संस्थापित होगी जैसे ही आप फ़ायरफ़ॉक्स रिस्टार्ट करेंगे
रेस्टार्ट नोव पर क्लिक करें
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स बंद हो जाता है
जब यह रिस्टार्ट होता है नई थीम्स लागू होती हैं
अपने थीम्स पेज पर वापस जाएँ
अब दूसरी थीम चुनें
यह थीम एड टो फायरफॉक्स बटन प्रदर्शित करती है
यह चुनी गई थीम को डाउनलोड करेगा
डाउनलोड पूरा हो जाने पर एक चेतावनी संदेश की विंडो प्रदर्शित होती है
इंस्टॉल नोव बटन पर क्लिक करें
आपको फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र रिस्टार्ट करने के लिए प्रोम्प्ट किया जाएगा
रेस्टार्ट नोव बटन पर क्लिक करें
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स बंद हो जाता है
जब यह रिस्टार्ट होता है नई थीम्स लागू होती हैं
तो हम देखते हैं कि ब्राउज़र की आकृति में सुधार लाने में थीम्स मदद करता है
यह आपकी अद्वितीय रूचि के हिसाब से फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र को कस्टमाइज करता है
यदि किसी कारण से आप डिफ़ॉल्ट थीम पर वापस जाना चाहते हैं तो टूल्स और add ओन्स पर क्लिक करें
बाएँ पैनल पर अपीयरेंस टैब पर क्लिक करें
यहाँ डाउनलोड की गई सभी थीम्स दिखाई देती हैं
यहाँ डिफ़ॉल्ट थीम देखें
इनेबल बटन पर क्लिक करें
रेस्टार्ट नोव बटन पर क्लिक करें
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स बंद होकर रिस्टार्ट होगा
जब रिस्टार्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट थीम एक बार फिर दिखाई देती है
add ओन्स टैब बंद करें
पर्सोनास फ़ायरफ़ॉक्स के लिए मुफ्त और संस्थापित करने में आसान स्किन्स हैं
पर्सोनास प्लस अधिक नियंत्रण देने के लिए नये लोकप्रिय और यहां तक कि आपके पसंदीदा पर्सोनास के लिए आसान एक्सेस के लिए इस अन्तर्निहित कार्यक्षमता को बढ़ाता है
यूआरएल बार पर क्लिक करें और टाइप करें addonsmozillaorgfirefoxपर्सोनास
Enter दबाएँ
यह हमें मोजिल्ला फायरफॉक्स add ओन्स के पर्सोनास पेज पर ले जाता है
हम एक बड़ी संख्या में पर्सोनास देखते हैं
अपनी पसंद के किसी भी परसोना पर क्लिक करें
यह आपको उस पेज पर ले जायेगा जो चुने हुए परसोना का विवरण देता है
एड टो फायरफॉक्स बटन पर क्लिक करें
आपको सतर्क करने के लिए ऊपर एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बार दिखाई देता है कि नई थीम संस्थापित हो गई है
नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बार के दाएँ तरफ छोटे एक्स चिह्न पर क्लिक करें
फ़ायरफ़ॉक्स इस परसोना को स्वतः संस्थापित करता है
अक्सर विज्ञापन हमारे इंटरनेट अनुभव के साथ हस्तक्षेप करते हैं
लेकिन यहाँ विशेष सॉफ्टवेयर हैं जो विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए में मदद करते हैं
एडब्लॉक ऐसा ही एक ऐड ओन है
टूल्स और फिर add ओन्स पर क्लिक करें
ऊपर दाएँ कोने के सर्च टैब में एडब्लॉक खोजें
Enter दबाएँ
विज्ञापन ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर की एक सूची प्रदर्शित होती है
एडब्लॉक प्लस के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें
एडब्लॉक डाउनलोड होना शुरू होता है
बस इतना ही
एड ब्लॉकर अब संस्थापित हो गया है
एक सूचना संदेश प्रदर्शित होगा जो दर्शाता है एडब्लॉक विल बीई इंस्टॉल्ड आफ्टर यू रेस्टार्ट फायरफॉक्स
रेस्टार्ट नोव लिंक पर क्लिक करें
मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स बंद होकर रिस्टार्ट होगा
जब रिस्टार्ट होता है एड ब्लॉकर प्रभावी होगा
हालांकि एड ब्लॉकर्स का उपयोग करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं
कुछ साइट्स आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती जब एड ब्लॉकर ऑन रहता है
यह इसलिए क्योंकि कई मुफ्त साइट्स उनकी आय विज्ञापनों से अर्जित करती हैं
एड ब्लॉकर आपके ब्राउज़र पर प्रदर्शित होने से कुछ साइट्स को रोक सकता है
इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए जब एड ब्लॉक कर रहे हों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
इस ट्यूटोरियल में हमने थीम्स पर्सोनास और एड ब्लॉकिंग के बारे में सीखा
इस नियत कार्य को करने की कोशिश करें
नासा नाइट लॉन्च थीम संस्थापित करें
फिर डिफ़ॉल्ट थीम पर वापस जाएँ
उनको छोड़कर जो yahooकॉम से हैं सभी पॉपअप्स ब्लॉक करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुम्बई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद